सब लोग खेल रहे है पानी में कुछ लोग ठहरे हुए है।

पिंक कलर की मंदिर है मंदिर के पास में येलो कलर का सामान रखा हुआ है वहां पे थोड़ी जालीस रखी हुई।

नीला आसमान है आसमान के पास में इतना सारा वाईट कलर का सामान रखा हुआ है इतनी सारी मंजिल है मंजिल के पास में इतनी सारी सीढीया है इतना सारा--

अच्छा सा रास्ता इतने सारे फूल्स है फुल के पास में छोटे छोटे भी फुल--

इधर रखे हुए है बहोत सारा सामान रखा हुआ है इतने सारे लोग है नाव ऐ पांच छे कलर के नाव है वो पानी के लहरों के--

यहाँ पर एक इमारत है इमारत के सामने की की विंडो बहोत ही अच्छे है वहां पर ब्लैक कलर की विंडो है उसके सामने झाड़ है।

वहां पे इतने सारे लोग ठहरे हुए है वहां पर लकड़ी का कुछ दिख रहा है।

वहां पर बेग वो रखे हुए है कपाट है कपाट के सामने दरवाजा है डर कपाट के सामने एक टेबल भी रखा हुआ है टेगर टेबल के उपर गिलास रखी हुई है।

यहाँ पे एक दूकान है दूकान के अंदर इतना सारा सामान रखा हुआ है वहां पे इतने सारे दो तीन लोग आये हुए है दूकान के सामने ठहरे हुए है दूकान में--

बेठे हुए है उसके बहार इतने सारे लोग ठहरे हुए है वहां पर बहोत सारे लोग इधर से उधर कर रहे है नीला आसमान है आसमान के निचे--

यहाँ पर इतने सारे पत्थरे लोग ट्रेन का वेट कर रहे है की ट्रेन कब आयगी--

यहाँ पे इतने सारे झाड़ झाड़ के बीचो बिच में पानी बहोत गिरा हुआ है निचे बहोत सारा पानी है और उपर झाड़ टंगे हुए है।

पानी बह रहा है पानी के अंदर इतने सारे झाड्स है थोड़ी थोड़ी देर को एक न एक दो--

यहाँ पे इतने सारे लोग ठहरे हुए है यहाँ पर इतने सारे लोग पूजा कर रहे है वहां पे एक मंदिर रखा हुआ है मंदिर के पास में एक गिलास है गिलास के सामने इतने सारे लोग ठहरे हुए है।

वहां पर इतनी सारी केरी बेग में सामान रखा हुआ है उधर छोटे छोटे पोस्टर लगे हुए है एक आदमी ठहरा है उसके हाथ में रेड कलर का झंडा--

यह है वहां पर छड़ी कोईनशन किया हुआ है वहां पर एक ओरत ने येल्लो कलर की साड़ी पहनी हुई है एक बच्चा भी है साथ में बाजू में एक शॉप है शॉप के पास में इतने सारे लोग ठहरे हुए है।

वहां पर लाईट का एक खम्बा भी है बड़ा लटोर और वहां पर खतरे का शेर भी है एक नीला नीला और पिंक कलर का आसमान दिख रहा है।

वहां पर कुछ सामन है बड़ा सा पत्थर है पत्थर के पास में खम्बे के पास में छोटे छोटे छोटे झाड्स है इट की एक दीवाल है डी बिच दीवाल है।

यहाँ पर एक टेबल रखा हुआ है सामने की शॉप में कुछ सामन रखा हुआ है।

भेस है भेस को लड़का देख रहा है उसके पास में इट की दीवाल है और कुछ सामन रखा हुआ है निचे बंबू है पीले कलर की थैली है।

बेल के मुह पर कुछ बाँदा हुआ है उसके गले में हरे कलर की रस्सी बंदी हुई है बेल ठहरी हुई है उसके सामने एक पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई ओरत भी ठहरी हुई है।

यहाँ पर इतने सारे लोग ठहरे हुए है एक ब्लैक कलर की कार है कार के सामने--

उसके पास में कुछ छिले हुए भुट्टे रखे हुए है भुटओ को छिले के रखा हुआ है भुट्टो की एक साइड से पूरा छिल गया है।

शादी का माहोल है वहां पर इतने सारे डेकोरेशन किया हुआ है फॉक्स से लगे हुए है इतने सारे फुल के ट्रंक कर रहा है।

इदर दो फोकस लगे हुए है उदर दो फॉकस लगे हुए है दो आदमी चेयर पर बेठे हुए है वो लोगो को अंदर भेज रहे है अंदर इतने सारे लोग बेठे हुए है।

सामने कुछ हुआ है और अंदर से तो बहोत अच्छा--

एक पोस्टर लगे हुए है दो पोस्टर लगे हुए है उसके पास में एक लाईट का खम्बा है खम्बे के पास में--

इतने सारे झाड़ लगे हुए है वहां पर कुछ शोक है वाइक है जैसे बलुंस भी लगे हुए है।

डी- मार्ट है डी- मार्ट के अंदर इतना सारा सामान रखा हुआ है कुछ स्टील के बर्तन है कुछ है जर्मन के बर्तन है एक मेज छे छे बर्तन रखे हुए है एक ओरत--

साड़ी पहनी है एक आदमी कुछ बच्चो को दिखा रहा है बच्चे ठहरे भी है वहां पर इतने सारे कांच के भी बर्तन रखे है।

शोपिंग करने का बॉक्स भी रखा हुआ है जहाँ से अपन शोपिंग करके कुछ लेकर जा सकते है।

गाड़िया ठहरी हुई है कुछ शॉप भी लगी हुई है वहां पर एम_ए_एल दूकान भी है और उसके सामने--

बहोत सारे स्कूटी है बहोत सारे गाड़िया है बहुत सारे लोग है लोग शॉप के अंदर आना जाना कर रहे है एक ओरत निकली--

बड्डे पार्टी चल रही है इतने अच्छे डेकोरेट किया हुआ है वहां पर स्टीकर लगा हुआ है हैप्पी बर्थडे --

और दो गुबारे भी लगे हुए है पाच पाच गुबारे की सिट लगी हुई है उपर से निचे तक गुबारे गुबारे दिख रहे है।

लोग कुछ कर रहे है दो येल्लो कलर की साड़ी हुई ओरते आई है वो मछली खरीद रही है वो मछली चेक कर रही है सही या नही--

एक घर है घर के ऊपर प्लस की निशान है वहां पे इतने सारे लोग ठहरे हुए है वो फोटो निकाल रहे--

इसने वाईट कलर का शर्ट पेंट पहना हुआ है और एक ने और वाईट कलर का पहना और एक ने पिंक कलर का पहना है।

और ग्रीन कलर की पेंट पहनी है उसने रेड कलर का शर्ट पहनी है।

वहां पर इतने सारे छोटे भी पत्थरे है बड़े भी पत्थरे लगे हुए है इतने सारे--

नदी है नदी के पास में ऐ कुछ जगाहे है कुछ एक आदमी वहां पर ठहरा हुआ है निचे पानी है उपर वो ठहरा हुआ है।

उसने रेड कलर की चेक्स की ड्रेस पहनी है उसके बाजू बाजू में बहोत सारे पत्थर की जेबे है और बहोत सारे झाड़ भी है पत्थर तो--

छोटे बड़े झाड़ से निचे जमीन है जमीन के उपर बहोत सारी मिट्टी है मिट्टी के पास में बड़े से बड़े पत्थर है वहां पर नारियल का झाड़ भी है एक आम का झाड़ भी है।

तो वो छत्त पर बेठी है एक ने रेड कलर का शर्ट पहना है तो वो भी छत्त पर बेठा है एक ने ब्लैक कलर की होरनी पहनी है एक ने ग्रीन कलर शर्ट पहना है एक ने येल्लो कलर का शर्ट --

डॉक्टर बाबा शाहब की फोटो लगी हुई है वहा पोस्टर पर पोस्टर फोटो लगी हुई है और कुछ लिखा हुआ भी है सब लोग वहां पर देख रहे है।

फूल से भी डेकोरेशन किया हुआ है फुल और गुबारे से और वहां पर कुछ पोस्टर भी लगे हुए है न्यू शॉप खुली है।

कुछ लोग ठहरे हुए है कुछ लोग बेठे हुए है कुछ लोग ठहर के बेठ के देख रहे है।

अ ठहरे हुए है वहां पर कुछ खिडकिया है भेस है यहाँ पर मुंडी करके ठहरे हुई है उनके निचे कुछ--

का काम चालु है और वहां पर इतनी सारी ट्रक आई हुई है ट्रक मेसे सामान लाया जा रहा है।

शॉप है शॉप के अंदर सोफा सब रखे हुए है कुछ चेयर रखे हुए है तीन चार मिडर रखे हुए है उसके पास में इतनी सारी लगे हुए है लायटिंग चमक रही है।

घर चमक रहा है वहां पर इतने सारे लोग है ब्लू कलर का आसमान है आसामान के बिच में कुछ जमीन है जमीन के पास में कुछ लोग खड़े हुए है।